इन्होंने व्हाइट सूट पहन रखा है और एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे हैं और यहां पर नृत्य कर रही है।

आई.डी.बी.आई. बैंक और उसकी ये अपना होटल --

यहाँ इसे ऊपर भी काफी बड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे दो तीन लड़के बाइक लेकर खड़े हैं।